इंसान दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर बहुत सारे टब दिखाई दे रहे है मुझे यहाँ पर गाजर दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर कांदा दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर गोभी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर--

काफ़ी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर कागज दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर कुर्सी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर जीना दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर लाइट दिखाई दे रही है।

बहुत सारे इंसान दिखाई दे रहे है मुझे यहाँ पर आ-आसमान दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर जमीन दिखाई दे रही है।

मुझे यहाँ पर खंबा दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर बिजली की तार दिखाई दे रहे है मुझे यहाँ पर मन्दिर दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर अच्छा मन्दिर सजा हुआ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।